इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बुक रखी हुई है बहुत सारी और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारी बुकें रखी गई हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेड्स रखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और--

इस चित्र में आप देख सकते हैं फूड ट्रैक का एक बोर्ड लगाया गया है बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फूल रखे हुए हैं और उसके सामने बहुत सारी मूर्तियां जैसे कि एक मूर्तियों की शॉप हो और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रही हैं लोगों को।

यहाँ पे लैब जांचें करी जा रहे हैं लोगों की रजिस्टर में भी नोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में लैब जांच करा रहे हैं अपने टेस्ट करा रहे हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं एक शॉप का ये चित्र है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं बहुत सारी चीजें मिल रही हैं।

डिलीशियस से केक्स भी रखे हुए हैं सामने और क्या कहते हैं फ्रिज के अंदर बहुत सारी ठंडी चीजें भी रखी हुई हैं बहुत सारी बॉटल्स लगी हुई दिख रही हैं मिठाइयां रखी हुई दिख रही हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी घासें लगी हुई हैं और इन घासों के अंदर जो है--

शर्ट टी-शर्ट पहन के और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक चट्टान सी बनी हुई है उनके सर के ऊपर--

इस चित्र के अंदर एक पार्किंग दिख रही है और एक कारें खड़ी हुई नजर आ रही हैं जिसके अंदर से जो है वो--

इस चित्र में आप देख सकते हैं गिननी फायर वर्क्स का बोर्ड लगा हुआ है और--

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक गैराज है यहाँ पर बहुत सारी कार्स जो हैं वो सही हो रही हैं।

और वीडियो रिकॉर्डर्स हैं और ये सारी चीजें यहाँ पे बिक रही हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं एक लड़की है वो डांस कर रही है उसने ब्लैक कलर का टॉप पहना है और रेड कलर का लहंगा।

और वो डांस कर रही है स्टेज के ऊपर जो है वो स्टेप्स --

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं उनके सामने हार भी रखे हुए हैं।

जैसे कि उनका स्वागत करा गया है और ये लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं सामने भी कोई लोग हैं जो उनको देख रहे हैं।

इस चित्र में आप देख रहे हैं कि उम्मीद एजुकेशनल स्टोर्स --

इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक जो है वो प्लस का साइन लगा हुआ है और एक घर बना हुआ है उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सामने ग्राउंड दिख रहा है और ये एक बेसमेंट का एरिया है।

झंडा वंदन कर रहे हैं वो और सामने एक चर्च है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वाशिंग मशीन्स रखी हुई हैं वहाँ पर।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक शादी का मंडप लगा हुआ है शादी है ये।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक होटल है और बहुत से लोग उसमें खाना खा रहे हैंऔर आप नजर आ रहा होगा।

इस होटल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर और काम कर रहे हैं खाना खा रहे हैं।

प्रेस के डब्बे वाटर कूलर अपोलो--

इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि एक टेबल लगी हुई है बहुत सारी खाने की टेबल के लिए लगाई गई है सामने जो है चेयर्स भी रखी हुई हैं एक स्टेज बना हुआ है।

खाने के लिए जो टेबल लगी हुई है उसके अंदर बहोत मतलब बहोत लंबी जोड़ी है टेबल है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक आदमी जा रहा है और यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ हार ही हार जो है वो टंगे हुएहैं बहुत सारे हार टंगे हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसके सामने बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं कारें खड़ी हुई हैं गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक शॉप का सीन है जहां पर मैनेक्विंस रखी हुई है और लोग बहोत सारे कपड़े पहने हुए हैं।

उनको नजर आ रहा होगा कि मेनक्विंस जो है वो खड़ी हुई है।

यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ है और शॉप बनी हुई है और उसके सामने जो है पानी पानी पड़ा हुआ है।

जो उसको डेकोरेट करा गया है मूर्तियां रखी हुई हैं मूर्तियां बनी हुई हैं और अच्छे से डेकोरेशन यहाँ पे करा हुआ दिखाई दे रहा है।

नाव के ऊपर और क्या कहते हैं ना रेड कलर की उसने शॉर्ट पहनी है और पानी भी है कुछ कुछ तरह का पानी भी नजर आ रहा है नीचे।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है वो नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं उनके हाथ में भी बहुत सारी--

इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं एस_ एफ_ सोनिक स्टैंड ट्यूबुलर--

अ की चीजें मशीन रखी गई हों बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पे बहुत सारा सामान है टायर्स हैं।

और स्टैंड टेबलर टायर्स हैं और ऐसी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं।

इस चित्र के अंदर आप देख सकते है की एक व्यक्ति है और वो क्या कहते है ना--

लगा हुआ है एक हाथ के अंदर उसके वो है वो काम कर रहा है हुआ है।

एक खम्भे को दिखाई दिया दे रहा है अपन को पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक सुनसान सा रास्ता--